फोटोग्राफर बैठ के फोटो खींच रहे हैं। सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रहा है। बोहोत भीड़ दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में मुझे सफ़ेद रंग का घर दिखाई दे रहा है। घर बोहोत बड़ा और आलिशान दिखाई दे रहा है। घर के पास गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे --

पेंट हुआ है और उम् --

हरे और लाल रंग की लाइटे अन्दर बोहोत सारी लाइटे रखी लगाई हुई हैं और अन्दर --

बहुत सुन्दर आकृति है। मस्जिद में मस्जिद --

इस इमेज में एक होटल दिखाई दे रही है। जहाँ पे वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट है जहाँ के जहाँ --

बोहोत छोटी-छोटी घासे दिखाई दे रही हैं। लाल मिट्टी दिखाई दे रही है दूर बोहोत --

इस इमे में मुझे कपडे की दुकान दिखाई दे रही है दो पंखे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइट दिखाई दे रही है। कपडे बहोत --

मस्जिद के आस-पास खाली जमीन दिखाई दे रही है।

सफ़ेद कलर की मूंछ दिखाई दे रही है।

फ्लैट देखाई दे रहे हैं जोकि बहोत सारे हैं।

इ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इ रिक्शा अलग अलग रंग का।

काले रंग का है। काले रंग की --

त्र करते हुए दिखाई दे रही है। जिसने काले रंग का टॉप --

ईट उठाये हुए'' दिखाई दे रहे हैं।

काले रंग का पर्दा दिखाई दे रहा है। तीनो ने अलग रंग की कपड़े पहने हुए है।